और एक बहुत बड़ा झंडा भी लगा हुआ है।

कुछ सामान कट्टों में भी है।

और मैदान पर हरी हरी घास भी खड़ी है।

और गुब्बारे भी लगे हुए हैं।

एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है।

कुछ अनार रखे हुए हैं।

और बहोत सारी लाइटे भी लगी हुई हैं।

बहोत सारे व्यक्ति भी बैठे हुए हैं।

और पंखे भी लगे हुए हैं और पर्दे भी लगे हुए हैं।

इस फोटो में एक सीमेंट का बड़ा मकान है।

इस फोटो में एक बहोत बड़ी नदी है और बहोत सारे पहाड़ भी हैं।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

इस कमरे में लोहे की कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

और कुछ लकड़ी की मेज भी पड़ी हुई है।

और थोड़ा सा पानी भी है।

इस फोटो में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

बहुत सारी कुर्सियां कुर्सियां हैं।

एक लोहे का खंभा भी खड़ा हुआ है।

इस फोटो में दो मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं।

यह फोटो एक दुकान का है।